दुकान के अंदर बहुत सारे चिप्स हम लोग देख सकता है और दुकान के बाहर एक ब्लू कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

और टेबल में हम लोग देख सकता है बहुत सारे ग्लासेस रखा हुआ है और क्यू आर कोड भी रखा हुआ है।

आप देख सकते हैं उसके बाल में राउंड राउंड करके वहां पर वो क्लिप लगाया हुआ--

वह यह केस के अंदर चला गया है इस गुफा के अंदर।

और हम लोग इस पत्थर मे व्हाइट चॉक से देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है बहुत सारे चीज लिखा हुआ है व्हाइट चॉक से।

और बहोत सारे लड़कियों का चप्पल भी हम लोग देख सकता है वहां पर रखा हुआ है।

वहाँ पर ग्रासेस भी निकला हुआ है और दूर में बहोत सारे ट्रीस और हरे भरे पत्थर मे ग्रासेस बहोत सारे निकला हुआ है।

और यह आलू देखने में हम लोग इसको थोड़ा सीमेंट आलू वहां पर देख सकता है थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ है।

इस पिक्चर में हम लोग को एक वाइट कलर का प्लेट दिखाई देगा।

आलू प्यास और मिठाई तेल भी हम लोग देख सक--

ब्लू कलर और रेड कलर का कपड़ा लगाया हुआ है हाथ में प्लास्टिक लेके खड़ा है।

कुछ रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है नहीं तो कुछ ब्लू वाइट कलर का।

और कुछ कप में लाइन का तस्वीर बनाया हुआ है कुछ कप में छोटा छोटा बनाया हुआ है।

इस पिक्चर में हम लोग एक सड़क दिखाई देगा और वहां पर एक रेड कलर का स्कूटी पार्क किया हुआ है।

हम लोग देख सकता है बाहर में एक अंकल खड़ा हुआ है।

इस पिक्चर में हम एक बड़ा सा नदी देख सकता है और ये पानी बहोत साफ है।